यह फैक्ट्री काफी बड़ा लग रहा है।

इस पेट्रोल पंप का नाम माँ देवता पेट्रोल पंप है।

इस पेट्रोल पंप के पास बड़े-बड़े पेड़ हैं।

यह एक विद्यालय का गेट है जिसका नाम जवाहर नवोदय विद्यालय है।

यहाँ पर एक कैंटीन भी है । यहाँ पर देख सकते हैं । कुछ कुर्सी और टेबल लगी हुई है ।

यहाँ पर गाड़ियों का मरम्मत किया जाता है।

यह एक बाजार हो सकता है।

यह मॉल अभी सवेंटी परसेंट छुट दे रही है।

ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं।

यहाँ पर हम दो ट्रेडमिल को देख सकते हैं।

यह मकान दो मंजिला है यहाँ पर यू.को. बैंक है।

इस पर लिखा है संकटमोचन मंदिर यह मंदिर हनुमानजी का है।